इस फोटो में एक बड़ी कंपनी दिखाई दे रही है जिसमें शीशे लगे हुए हैं।

और इसमें हरे रंग का मैट है। पीले रंग का है लाल रंग का है आसमानी रंग का है बैंगनी रंग का है।

और छोटे छोटे गमले भी हैं और काले रंग की कुर्सियां भी--

और इसमें एक सूखा पेड़ भी खड़ा हुआ है।

इसमें शटर लगा हुआ है इसमें कुछ ग्रिल भी दिख रही है तार भी दिख रही है।

और इसमें लकड़ी की कुछ खिड़कियां भी दिख रही हैं।

और इसमें एक गणेश जी की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में कुछ औरत वेह आदमी खड़े हुए हैं और इसमें दो पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं।

यह फोटो में एक स्टील की ग्रिल दिखाई दे रही है।

इसमें एक पेंटिंग भी दिख रही है और इसमें एक लाल डब्बे भी दिखाई दे रहे--

इस फोटो में एक मशीन दिख रही है नीले रंग की।

इसमें बेंच का एक कोना भी दिखाई दे रहा है।

इसका बोनेट खुला हुआ है और इसका टायर भी निकड़ा हुआ है।

मे मोटर साइकिल हैं बहोत सारे आदमी हैं।

और इसमे कुछ घर भी दिख रहे कपड़े सूखते हुए भी दिख रहे --

इस पर तार भी लगे हुए हैं और इसमें कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में कुछ मकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में बहुत सारी पब्लिक दिखाई दे रही है।

और इसमें एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें लाइटिंग भी लगी हुई है।

यह फोटो किसी मोबाइल की दुकान का लग रहा है।

और इसमें कुछ शीशे के जंगले भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक टंकी भी दिखाई दे रही है।

एक आदमी ने ऊपर तार पकड़ रखा है।

यह फोटो किसी जिम का लग रहा है।

इनमें बीम भी है और ऊपर तार भी दिख रहे हैं और एक पोस्टर बड़ा भी दिख रहा --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

इसमें एक खंभा भी दिख रहा है।

और इसके डेकोरेशन भी की हुई है।

और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें पीछे और भी कार दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी ने सफेद रंग की शर्ट पेहनी हुई है और जीन्स ।

इनमें गांछ भी दिखाई दे रही है और पत्थर पर से पानी भी बह रहा है।